और मास्टर जी भी खड़े हुए हैं।

और कई लोग पैदल जा रहें हैं। एक लेडीज़ मास्क लगाए हुए है | अ --

ये मुस्लमान हैं यहाँ पर वे अपनी पूजा-पाठ करते हैं।